ये बच्चों का स्कूल है छोटे बच्चों का जैसे किड्स स्कूल होता है ना--

तो ये देखो पहार की फोटो दिखा रखें इसमें इसमें लिखा आइडिया आई_डी_एफ_सी --

इसमें देखो इतने सारे लोग खड़े हैं।

ये है ना पहाड़ है इतने सारे पहाड़ हैं न ये--

इनके हाथ में देखो पेपर है और ये पढ़ रहे है।

ये है मंदिर देखो कितना अच्छा सजा रखा है ये लाडिया लगा रखी है रंग बिरंगी जिससे ये अच्छा भी लगे ऊपर भी ये लाइट लगा रखी है।

राधा कृष्ण की बाहर फोटो भी है और मैट भी बिछा रखा है।

देखो पीछे भोले बाबा का मंदिर है हनुमान जी की होगी।

क्लाइंट के लिए हो गई और एक बॉस के लिए हो गया देखो बेंच भी रख रखा है इतना बड़ा।

जिम तो आपने सुना ही होगा जहां पर बॉडी वगैरा बनाई जाती है मोटे हो जाओ चाहे पतले हो जाओ ये मशीन न इतनी काम आती हैं इससे शरीर फिट एंड फाइन रहता है।